घर के दरवाजे पर भगवान जी शंकर भगवान का पोस्ट दिखाई दे रहा है ऊपर नीले रंग के अक्षर में कुछ लिखा है पीछे तरफ ट्री दिखाई दे रहे है

एक दो व्यक्ति सामने भी बिल्डिंग में नाम लगा हुआ है एक दो व्यक्ति होगा चार्ट में और सामने भी बिल्डिंग में नाम लगा हुआ है एक दो व्यक्ति हो जाते--

एन होटल की इमेज सामने की तरफ एक फोर व्हीलर खड़ी हुई है और एक बड़ा सा विज्ञापन लगा हुआ है होटल का नीचे तरफ बिरयानी के चित्र बने हुए हैं|

सामने होटल का नाम लिखा हुआ है होटल के नाम के साथ एक नंबर भी लिखा हुआ है|

बारिश का सीन है जहां पर रोड पूरी तरह से गली है और सामने से लाल गाड़ी आई हुई दिखाई दे रही है काफी हरियाली और ठंडा मौसम दिखाएं--

लड़कियां नहाती करती हुई दिखाई दे रही है जिनका सीधा हाथ नीचे की तरफ और उल्टा हाथ ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है चारों ने अपने पैर में जुटी नहीं पहनी है ऊपर एक फैन लगा हुआ है|

पीछे कि तरफ एक कमरा दिखाई दे रहा है ।

हाथ से बनाई गई है नीचे की तरफ एक पिंक कलर का डब्बा रखा है ।

सामने गेट के ऊपर एयरपोर्ट लिखा हुआ एक बोर्ड दिखाई दे रहा है सामने कुछ गाड़ियां खड़ी हैं ओर कुछ जाते हुए दिखाई दे रही है कुछ लोग भी हैं किनारे कि तरफ गिट्टी डली हुई है ।

पुरस ओर महिलाए पूजा करते हुए दिख-दिखाई दे रहे हैं पुरुसो ने पीले कलर कि धोती लपेटी हुई है ओर मुकुट लगाया हुआ है ओर सभी के पास हवन के लिए कुंड रखा हुआ ओर एक एक पूजा--

ये सारा इलेक्ट्रॉनिक समान दिखाई दे रहे है सामने कुछ फ्रीज कुछ वाशिंग मशीन और कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजे रखी हुई है जैसे की फ्रीज और ब्रांडेड चीजे रखी हुई है सब के नाम है।